उस और उसके पीछे में लाल और पीला कलर का टेंट है और वहा पे बोहोत सारा आदमी खड़ा है ।

हम्म और वहा पर वाईट कलर का स्कूटी लगा हुआ है।

यहाँ बहोत सारा रेड कलर का कुर्सिया और यहाँ पे बहोत सारा आदमी बेठा हुआ है और एक आदमी खड़ा भी है।

उसके सोफा के बगल में वो पलंग है।

पलंग पे वाइट कलर पीला कलर का कुछ और एक फोटो लगा हुआ है उसमें दो कार है।

और निच्चे में करे थे लाल रंगा का और नारंगी कलर का लाल रंग के कैरेट में अमरूद रखा हुआ है।

इसमें ब्लू कलर का बच्चा का खेलने वाला बनाया हुआ है और उसके आगे में एक पोल है और उसके आगे में वाइट कलर का मंदिर है।

और बहुत सारा कार्ड लगा हुआ है जिसमे पिला कलर का ऑटो भी है।

और काला कलर का ग्रेट भी है इसमें और सोलर का टेबल पर टरेंक्र बनाने में भी बिजी है।

यहाँ एक वाईट कलर का घर है जिसमे बहोत सारा किताब रखा हुआ है एकठी कर के बोक्स में--

और उसके पीछे आदमी सब खड़ा है और उसके पीछे कार सब लगा है।

यह एक पिला कलर का दो मंजिला मंदिर है उसके गेट ब्लैक कलर का है।

यह एक बोडी बोडी फिल्डर है वो लाल कलर का--

और उसके पीछे ब्लू कलर का चादर रखा हुआ है।

यह एक पीला कलर का घर है जिसके आगे में बहोत सारा मोटरसाइकिल रखा हुआ है।

घर के अंदर दो आदमी खड़ा है और इसमें एक शेरी है और गेट है और एक खिड़की है।

और खिड़की में कटे कलर का पेंट भी किया हुआ है।

और आदमी के आगे लाला कलर का पेंट किया हुआ--

रोड के बगल में व्हाइट कलर का कार खड़ा है। कार के बगल में नारियल का पेड़ है।

हाँ एक ब्लैक कलर का एटीएम है और ये अभी--

ऑन है और उसके बगल में कचरा भी है।

और उसके पीछे टटी कलर का एक झाड़ू भी रखा हुआ है।

यह एक वाईट कलर का घर है जिसमे घर के एक्स्ट्रा दीवार में बहुत सारा आदमी का फोटो लगा हुआ है।

और सब कुरकुरे सब दंगा हुआ है यहाँ पे--

और वाईट कलर का स्केनर है कोन्टर के निचे चिप--

और आदमी के हाथ में बेग है और पीछे ग्रिल है।

और उसके पीछे में काला कलर का फ्रिज भी रखा--

और पुल के बगल में हरा कलर का दीवाल पे जंगल है और पुल के ऊपर एक आदमी भी खड़ा हैं।

यहाँ पे वाईट कलर का और ग्रे कलर का कार है और एक साइकिल भी है उसके अंदर दो मोटरसाइकिल है।

या मोटर साइकिल के बगल में जंगल पेर उरे भरा भरा--

और हरा कलर का बस है बस के बगल में पेर है बहोत बड़ा--

उसे से एक आदमी ऑरेंज कलर का कपडा पहने हुए है और एक पिला कलर का ओर एक वाइट और --

उसके बगल में एक पेर बहूत सारा पेर भी है।

इसमें लिखा हुआ है वंडर स्पोर्ट करके उसका सीढी है ब्लैक कलर का--

उसका तो उसके पीछे और शेर और शेरी में पिला कलर का बोल सब लगा हुआ है और शेरी के गेट में--

और बोहोत सारा पेड़ पोधा है और एक आदमी भी खड़ा है वहा पर साइड में --

और बिजली का खम्बा है तिन तार है।

यहा एक सेलून है जिसमे सेलून वाला रेड कलर का--

शर्ट और जीन्स पहने हुए है और एक आदमी बैठा हुआ है जो वाइट कलर का शर्ट ऊपर में गमछी रखे हुए है।

और उसके आगे बहोत सारे पेड़ पोधे है।

यह एक वाइट कलर का सैलून है जिसमे लाल कलर का शीशा लगा हुआ है बैलून लगा हुआ है।

और घर में कोलेज एंड होस्पिटल लिखा हुआ है।

यह एक फिलेड जिसमे एक और औरत और बहुत सारे आदमी बैठा हुआ है और कुछ आदमी खड़ा है और बगल में लाल कलर का दीवाल है।

और उसके आगे पोस्टर भी रखा हुआ है घर सजाया गया उसके अगल बगल बोहोत सारा पेड़ रखा हुआ है ।

उसके बिच में वो नारियल का काच है उसके आगे मेवे बिजली का खम्बा है।

इसको लटका रखा हुआ है फ़ोन रखा हुआ है।

लाल और पिला कलर का फुल है और पिला कलर का घर भी है।

यह यह एक वाइट कलर का टीना है जिसके ऊपर लिखा है मल्टी ब्रांड कार --

उसके बाद मीटर भी लगा हुआ है उसका ग्री कलर का दीवाल भी है और दीवाल पे थोड़ा जंगल भी है गड्डा है ।